एक बिल्डिंग नजर आ रही है जो कि टु फ्लोर्स है और इन पेड़ो के नीचे कुछ पेंट हुआ है व्हाइट एंड रेड कलर का --

और इसमें एक बच्चा और एक आदमी भी स्विमिंग पूल में तैर रहा है स्विमिंग पूल के बाहर एक बैग और कुछ बॉटल्स भी रखे हुए हैं पानी की।

कुछ घास-फूस भी लगी हुई है रोड पर कुछ फोर‌‌ व्हीलर गाड़ी भी जा रही है उस साइड कुछ मकान है और इस साइड एक बस है जो की रेड कलर की है और उस पर बड़े-बड़े कांच के दरवाजे लगे हुए हैं।